यहां पर दो बाईकें भी दिखाई दे रही है और यहां एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जिसपर रंग किया नहीं गया है।

यहां पर बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं और यहां एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

यहां चलने के लिए एक रोड भी बनाया दिख रहा है जिसपर टाइल्स लगाया हुआ है।

यहां एक बाउंड्री भी दिख रही है जिसका रंग उजला है।

और यहां पर बहुत सारे लोग जमीन पर भी बैठे दिख रहे हैं।

यहां एक फ्रीज भी दिखाई दे रहा है जिसका भी रंग काला है और उसके ऊपर एक गमला भी रखा हुआ--

यहां पर बहुत सारे राखियां भी टंगे दिख रहे हैं।

एक पहाड़ का दृश्य है यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां भी नीचे बनाई दिख रही है।

यहां ऊपर एक बोर्ड भी दिख रहा है जिसका रंग उजला हुआ है।

यह एक झरने का दृश्य है जहां पर एक व्यक्ति नहाते हुए दिख रहा है।

यह एक घर का दृश्य है जिसके दीवार पर उजला रंग किया गया है।

यहां के जमीन पर टाइल्स भी लगा हुआ है और यहां के दीवार पर एक पेंटिंग भी लगा हुआ है।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

यहां पर दीवार पर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ हैं जिसका रंग उजला है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर एक व्यक्ति एक क्रीम रख के कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है।

यहां नीचे एक और बोर्ड लगा दिख रहा है।

एक कमरे का दृश्य है जहां पर एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

यहां का दीवार का रंग उजाला है और पिलर पर भूरा रंग किया हुआ है।

इस पर क्रीम और हरा रंग किया गया है यहां पर बहोत सारे लोग भी खड़े दिख रहे हैं।

यहां एक दो व्यक्ति एक टाइल्स को एक गाड़ी से ले जाते हुए दिख रहे--

यहां दो महिला भी दिखाई दे रही है जिसने उजले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।